सामने एक टेबल रखा हुआ है उसका कलर ब्राउन और व्हाइट है।

राइट साइड की दीवाल भी व्हाइट है ऊपर ऐ_सी लगी हुई है और उसके छत पे दीवार छत भी इसकी वाइट है और कुछ लाइटें लगी हुई हैं।

यह तंबू पूरा व्हाइट रंग का है इसके साइड साइड में पर्दे लगे--

स्लैब के नीचे सरिया पड़ी हुई है और सीमेंट रखी हुई--

नीचे कच्ची जमीन है और यहां कुछ सूखे पत्ते गिरे हुए--